libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
अपनी रूचि के अनुसार लेआउट और report के आकार में बदलाव कैसे करें
इसके लिए अपने परिचित उदाहरण database को देखते हैं
पिछले tutorial में हमने सीखा था कि report कैसे बनाएँ
और हमने report books issued to members: report history शीर्षक के साथ बनाई थी अब हम सीखेंगे कि इस report में बदलाव कैसे करें
library database में
बाएँ panel पर reports icon पर click करें
दायें panel पर हम reports सूची में books issued to members: report history report देख सकते हैं
इस पर दायाँ click करें और फिर report को बदलने या सम्पादन करने के लिए edit पर click करें
अब हम report builder नामक एक नई window देखते हैं
इस screen में this मुख्य भाग हैं
page header और footer page जो कि ऊपर और नीचे को बनाता है
फिर header भाग है
और फिर detail भाग है
हम record header और footer भाग भी जोड़ सकते हैं
सफेद क्षेत्र में मुख्य screen पर दायाँ क्लिक करके और insert report header/footer पर क्लिक करके
हम screen के बायीं तरफ नारंगी रंग के क्षेत्र पर double क्लिक करके इन भागों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं
हमारे आगे बढ़ने से पहले यहाँ report डिजाइन window का screenshot है
हम अपनी report के डिजाइन को इस तरह से दिखने के लिए रूपान्तर करेंगे
हम कुछ text labels fonts जोड़ेंगे तथा विभिन्न भागों के स्पेस की formatting और समायोजन करेंगे
ठीक है add कुछ report headers और footers जोड़ते हैं
यह करने के लिए हम label field icon पर click करेंगे
report में controls toolbar सबसे ऊपर menu bar के नीचे पाया जाता है
चलिए इसे report header क्षेत्र में बनाते हैं जैसा कि अभी दर्शित हो रहा है
और इसकी विशेषताओं को दायीं तरफ लाने के लिए label पर double click करें
यहाँ label के सामने टाइप करते हैं books issued to members: report history और enter दबाते हैं
चलिए font स्टाइल भी बदलते हैं; हम arial black change bold और size 12
और ok button पर click करते हैं
आगे जैसा screen पर दिखाया है वैसा report footer पर एक और label जोड़ते हैं
उदाहरणस्वरुप चलिए report prepared by assistant librarian type करते हैं
और फिर font स्टाइल को arial bold italic और size 8में bold
add page footer क्षेत्र में label जोड़ने के लिए हम वही steps को दोहराएँगे
इस बार हम label के सामने time करेंगे nehru library new delhi
और font स्टाइल को arial में bold और size 8
अब खाली स्थान को सुधारते हैं
पहले page header और report header के बीच स्लेटी रेखा पर double क्लिक करके page header क्षेत्र को कम करते हैं
और हम इसे click drag और drop तरीके से सबसे ऊपर ले जाएँगे
अगला report header और header के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके report header क्षेत्र को कम करते हैं
report footer और page footer के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए भी हम इसी तरीके को दोहराएँगे
अगला header labels को बीच में करते हैं
हम यह book title पर क्लिक करके पहले सभी labels को चुनकर करेंगे
और फिर जब shift बटन दबाते हैं; हम दिखाई दे रहे बाकी labels पर click करेंगे
अब इनको मध्य में लाने लिए अप arrow बटन का इस्तेमाल करें
हम अब header को हल्का नीला प्रष्ठभूमि देंगे
यह करने के लिए हम properties पर जाएँगे और background transparent को no में बदल change
और फिर list से background colour के लिए blue 8 चुनें
हम यही detail भाग के लिए भी करेंगे
इसके लिए सबसे पहले हम detail और report footer भागों के स्पेस को बढ़ाएँगे
और फिर fields को मध्य में लाएँ
हम detail भाग के लिए हल्का स्लेटी background चुनेंगे जैसा दिखाया गया है
आगे checked इन field के लिए हम data formatting बदलेंगे
चूँकि यह boolean values 1 या 0 रखता है यह true या false दर्शाता है
हम इसे अनुकूल yes या no विकल्प दिखाने के लिए बदलेंगे
इसके लिए हम detail भाग में दायीं तरफ पर checkedin field पर double click करेंगे
tab दायीं तरफ properties पर पहले data टैब पर click करें
data field के बगल में button पर click करें जो checkedin है
यह function wizard नामक एक नई पॉपअप window खोलता है
यहाँ पहले नीचे दायीं तरफ formula text box खाली करें
फिर category ड्रॉपडाउन पर click करें और फिर if पर double click करें
अब दायीं तरफ हम नये संचालन देखते हैं
अब पहले text box के दायीं तरफ select icon पर click करें
यहाँ हम checkin पर double click करेंगे
double हम दूसरे text box में दोहरेउद्धरण चिह्नों में yes type करेंगे
और फिर तीसरे text box में no type करें
tab हम properties भाग में general टैब पर जाएँगे
और नीचे formatting के सामने button पर click करें
यहाँ हम category सूची में text पर click करेंगे
और फिर ok button पर click करें
और अब हम report सेव करेंगे
ठीक है अब अपनी परिवर्तित report को रन करते हैं
इसके लिए हम सबसे ऊपर edit menu पर click करेंगे और फिर execute report पर click करें
और यहाँ library सदस्यों को जारी की गयी पुस्तकों का हमारा सूक्ष्म विवरण है
spacing headers footers fonts पर ध्यान दीजिये
और checkedin field पर ध्यान दीजिये जो yes या no दर्शाता है
और हमने अपनी report में बदलाव कर लिए हैं
इसी के साथ हम libreoffice base पर report में बदलावों के इस tutorial की समाप्ति की ओर a गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि:
अपनी रूचि के अनुसार लेआउट और report के आकार में बदलाव कैसे करें